ये एक बहुत बड़ा खेत है जिसमे पानी भरा हुआ है।

ये एक मैदान है जहां पे बहुत सारी झोपड़ी बनी हुई है जो कि कच्ची है सब में शेड डला हुआ है और प्लास्टर नहीं हुआ है ईटे दि --

ये एक दुकान है मछली की छोटी-छोटी मछलियां बेच रहे हैं।

एक आदमी जो गमछा बांधा हुआ है एक पीले कलर के टब मे बहोत सारी मछली रखी है और उसके हाथ मे एक दराजू जिसमें वो तोल रहा है।

ये बॉडी दिखा रहा है पीछे मशीन्स है जो की ब्लेक कलर की है और नीचे का जो कार्पेट बिछा है वो रेड़ एंड ब्लू कलर का बिछा हुआ है और डंबल्स रखे हैं।

और एक साइकिल पे एक आदमी मास्क लगाकर जा रहा है साइड में हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है जो की बस स्टैंड है वो गुमटियों पर समान बिक रहा है।